यहां पर दो लड़कों ने पत्थर पकड़ा हुआ है।

यह फाइल्स टेबल के ऊपर रखी हुई नजर आ रही हैं।

जिस पर गुरु नानक वैष्णो ढाबा लिखा हुआ है।

जिसके ऊपर महिंद्रा लिखा हुआ है।

इस चित्र में काफी सारी साइकिले नजर आ रही हैं।

बाइक के ऊपर हेलमेट भी लटका हुआ नजर आ रहा है।

टेबल के ऊपर तीन से चार क्यू_आर कोड स्कैनर भी रखे हुए हैं।

पीछे न्यू शिंतन का एक मेकअप का बोर्ड भी लगा हुआ है राइट साइड में शीशे की अलमारी भी है।

यहां पर एक औरत एक बच्चे के साथ आती हुई नजर आ रही है।

इस चित्र में हरे भरे घास नजर आ रहे हैं सामने कुछ बैठने के लिए कुर्सियां भी रखी हुई है।

यहां पर कुछ दो पहिया वाहन और साथ में साइकल भी नजर आ रही है।

यह एक बहुत ही बढ़िया तस्वीर नजर रही है।

यहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

वह बेड पर बैठा हुआ है बेड की चादर सफेद रंग की है।

फैन के साथ में एक एल_ई_डी और सेटअप_बॉक्स में नजर आ रहा है।

वहीं कुछ झूमर भी नजर आ रहे हैं।

कहीं तेज स्पीकर भी नज़र आ रहे हैं जो की काले रंग के हैं।

जोकि तारों के साथ लगे हुए हैं। यहां पर काफी सारी दुकानें नजर आ रही हैं।